सफेद रंग के हैं उनके पीछे बहुत सारी कुर्सियां लगी हुई नजर आ र--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

यह पीछे की ओर खुला आसमान है तथा दृश्य बहुत ही मनोरम है।

सफेद रंग की टी शर्ट पहेना हुआ है जिसके हाथ में मोबाइल है नजर आ रहा है।

यह दृश्य एक दुकान का जिसका नाम श्री हिंगलाज बुक डिपो है।

और एक कीबोर्ड तथा एक लैपटॉप और मॉनिटर दिखाई दे रहा है।

बाइक भी नजर आ रही है ऐसा कुछ व्यक्ति बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इसमें सामने की और बहुत सारे कपड़े हैंगरों में टंगे हुए नजर आ रहा है।

यह दृश्य एक फसल का है जिसमें सामने की ओर बहुत सारे बांस लगे हुए हैं।

जिसमें एक बिल्डिंग जो बहुत सारे बल्ब द्वारा सुसज्जित की हुई है।

पीछे की ओर एक थ्री व्हीलर नजर आ रहा है पीछे की ओर एक फोर व्हीलर नजर आ रहा है।

कई सारे रिक्शे नजर आ रहे हैं सामने एक ठेला लगा हुआ दिख रहा --